दे रही है उसने खाली पेंट पहना हुआ है और कुछ भी नहीं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वो लोग खेल रहे हैं। सबने --

उसने ब्लैक कलर की नाइटी और टी-शर्ट पहना हुआ है ग्रे कलर के शूज पहने हुए हैं ऊपर लाइट चालू है।

यहां पर एक पेड़ दिख रहा है निचे एक बाइक खड़ी हुई है और दुन में कुछ मुंढ़प जैसा दिख रहा है।

यहाँ एक किसी मल्टी इमेज दिखाई दे रही है यह इमेज के अंदर कई --